अं जिसमें ये दो टेबल रखे हुए हैं और ये क्या चार बैठने वाले स्टूल है गुब्बारे लगे हुए हैं।

ये एक एक्सरसाइज के लिए एक चीज बनाई गई है जिससे कि हमारे हाथों को आराम मिलेगा ये क्या की एक गार्डन जैसा लग रहा है।

हमें यहां पर तीन चार दीवारें दिखाई दे रही है।

स्थान है जहां पर एक बड़ी सी इमारत है बड़ा भवन है पीछे बहुत सारे उसके आगे बहुत सारे --

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जिसके अंदर हमे बहुत सारे समान दिखाई दे रहे है।

यह त कुछ बिल्डिंग पुरानी पुरानी सी लग रही हैं।

जिसके अंदर कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यह तस्वीर किसी सर्कस --

यह तस्वीर किसी हॉस्पिटल की दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ मरीज बैठे हुए हैं और कुछ --

यहां पर सजावट बहोत ही बढ़िया है और यहां पर एक बाहर जोडे की तस्वीर लगी हुई है।

यह तस्वीर किसी नदी के किनारे की दिखाई पड़ रही है जिसके पास कुछ बहोत सारे वृक्ष उगे हुए है।

वैन खड़ी है और यहां पर एक पार्क सा दिखाई दे रहा है जिसके पास में पेड़ के नीचे एक--